हिरन को पानी पीने के लिए टब भी बनाया गया है।

यहां पे बैलूने से सजावट की गई है।

समने बड़े अक्षरों में पोश लिखा हुआ है।

तीन मायके भी लगी हुई है।

यहां बच्चे बच्चियां शिक्षक गण भी दिखाई दे रहे हैं।

सामने सेलोटेप सीजर फेविकोल भी रखा हुआ हैं।

यह एक समुंद्र का दृश्य दिखाई दे रहा है।

लास्ट में कोने में कुछ सामान रखा गया है।

यहां पे दो महिलाएं और एक पुरुष दिख रहे हैं।

यह दिन का समय व्यतीत हो रहा है।

यह एक डैम का दृश्य दिखाई दे रहा है।

कुछ पंखे चलते हुए भी दिख रहे है।

यह एक कार्यक्रम का दृश्य है।

यहा पे एक गोल गुंबद सजावट की गई है।

यह दिन का समय व्यतीत हो रहा है।

यहां पे बहुत सारे फल रखे हुए दिख रहे हैं जैसे संतरा अनार सेव केला --

जिस पर नूर टावर और हॉप्वेल हॉस्पिटल लिखा हुआ है।

ऊपर एक पंखा और बल्ब भी लगाया हुआ है।

ऊपर छत पे आर्टिफिशियल फूल से सजावट की गई है।

ये दिन का समय व्यतीत हो रहा है।

विवाह मंडप को परदे और फूल से सजावट की गई है।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

यहां महिलाएं और पुरुष खड़े दिख रहे हैं।

यहां पर बहुत सारे महिलाएं बच्चे पुरुष पर खड़े हुए दिख रहे हैं।

यह दिन का समय व्यतीत हो रहा है।

यहां एक वाटर बोतल में दिख रहा है।

सामने एक रास्ता गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है।